जस जो की ग्रे कलर की है और यहां पर आदमी लोग पर बैठा हुआ है ।

और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि टोपी पेहना हुआ है।

और यहां पर बाम्बू से बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहां पर बजरंगबली का भी अ मंदिर--

और यहाँ पर विराट कोहली का भी यहाँ पर चित्र दिख --

और ब्लू कलर का टीन से बना हुआ यहाँ पर दो उम टेबल रखी हुई है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर बहुत सारी सामान रखे हुए हैं जो की स्प्राइट की हैं और एक थम्स अप की है यहां पे --

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये एक दवाई का दुकान है और ये एक रात का समय है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर बहोत सारी मशीनें दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर की है।

जो कि ब्लू कलर की है और यहाँ पर दो सु--

और एक कम्प्यूटर नजर आ रही हैं और आदमी ने ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है और यहां पर--

जैसे की मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पर पिंक कलर का चार बोतल रखा हुआ है एक ग्लास रखा हुआ है एक --

और यहां पर ओ_वी_ओ लिखा हुआ है बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी टेबलें है दिखाई दे रही है और--